घास है घास के घास है आजू बाजू दोनों तरफ घास है घास के बीच में रोड है।

उसे माप सकें जितना है उतना और यहाँ पे माउस है बिल्कुल--

और वहाँ पे कर लगा हुआ है लाल कलर के हैं और पीले कलर के लाल कलर के व्हाईट कलर के फुगे हैं।

व्हाईट कलर की है और काले कलर के पहिए हैं।

बैठने के लिए चेयर है व्हाईट कलर है और--

और बाजू यहां व्हाइट कलर की बिल्डिंग है उसके अंदर जाने के लिए रास्ता है।

और यहाँ आजू-बाजू झाड़ है लाइट है वायर है।

जीन विल टी शर्ट है और उसके नीचे एक ब्लू कलर की जींस है पीछे लाइट है लाइट में कांच--

और वहाँ पे लाल है लाल के बाजू फिर हरी है हरी के अंदर नीचे रोड है रोड के बाजू आदमी खड़ा हुआ है।

ये लगे हुए हैं बाजू लारी है लारी के ऊपर काला कलर का कवर लगा हुआ है।

कालीकलर की बैल है बैल घास खा रही है नीचे हरी कलर की घास है और जमीन है जमीन के ऊपर एक ग्रे कलर के--

उसमें बल्ब है बल्ब काला कलर का है और यहाँ पे भी एक बंबू है व्हाईट कलर का।

सामने यहां पे सामने कार है कार को ऊपर से काले कलर के कपड़े से ओढ़ाया है और यहां पे एक कार है वहां पे सिल्वर कलर के कपड़े चे ओढ़ाया हुआ है।

लाल कलर के मंदिर है मंदिर के सामने काला कलर का झंडा भी लगा हुआ है बाजू बहुत बड़ा झाड़ है झाड़ के पास--

उसमें हैप्पी बर्डे लिखा हुआ है बाज़ू दो तीन औरतें हैं ठहरें हुए हैं।

व्हाईट कलर की साड़ी और काले कलर के बाल है और प्यानो उसके हाथ में है।

और ब्लू कलर का सोफा है व्हाईट कलर की जमी--